पीछे कुछ बना रहे हैं।

गार्डन में बड़े के फूल को लगाया गया है।

घर को पूरी तरह से तीना से बनाया गया है।

घर के बाहर कपड़े भी सुखाए हुए हैं।

मुझे घर दिखाई दे रहा है।

पुच्ची भी दिखाई दे रहा है।

घर के बाहर सीढ़ी भी बनाया गया है।

मूर्ति के आगे बहोत सारे चीज रखे हुए हैं।

यहां मुझे दुकान दिखाई दे रहा है।

फ्लोर भी टाइल्स का बना हुआ है।

रेस्टोरेंट के अंदर चेयर टेबल रखें हुए हैं।

लाइट भी जला हुआ है।

दो इंसान भी दिख रहा है।

स्टर में यामाहा लिखा हुआ है।

लाइट भी जल रहा है।

दो लड़के भी दिख रहा है।

मुझे दुकान दिखाई दे रहा है।

लाइट भी जला हुआ है।

वृक्ष को सुंदर से सजाया गया है।

ये दुकान दिखाई दे रहा है।

फुल पॉट भी दिख रहा है।

वहां कुछ लिखा हुआ है।

और लाइट से सजाया गया है

नीचे में पाइप भी दिख रहा है।

रूम दिखाई दे रहा है।

एक रूम दिखाई दे रहा है।

रूम के अंदर बहोत सारे लोग बैठे हुए हैं।

मुझे एक रूम दिखाई दे रहा है।

रूम के अंदर इंसान भी दिख रहा है।

फ्रिज के अंदर दो केक दिखाई दे रहा है।

बच्चे भी दिखाई दे रहा है।

घर को ग्रे कलर में पेंट किया हुआ है।

टेबल के ऊपर लैपटॉप भी चलाया हुआ है।

रूम के अंदर बहोत सारे--

कपड़े अलग अलग डिजाइन के है।